आ रहा हैं ट्रक लगाया जा रहा हैं जिसमें कुछ बोरिया रखी दिखाई दें रही --

बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा जिसके आसपास बहुत सारी खिड़की और दरवाजे दिखाई दे रहे खिड़की और दरवाजे का कलर ब्लॅक कलर का दिखाई दे रहा नीचे की तरफ एक दिखाई दे रही आसपास गमले दिखाई दे रहे गमलों का कलर रेड कलर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे एक काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर की तरफ एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है जिसमे रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ चार गाडिया खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सामने की तरफ दो बसेस दिखाई दे रही है। जिनका कलर रेड और व्हाइट दिखाई दे रहे। नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी गीला हुआ दिखाई दे रहा है उपर कि तरफ बादल दिखाई दे रहे है।